और यहाँ पर नीचे की तरफ बहो नदी बह रही है और यहाँ बहोत सारे पेड़-पौधे लगे हुए हैं।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

और ये ऊपर की तरफ ऑफिस भी बना हुआ है और यहाँ आइसक्रीम की दुकान है और यहाँ बहोत सारी बाइके खड़ी हैं कुछ लोग आ रहे है जा रहे हैं कार भी खड़ी है।

और यहां पे कुछ आदमी हैं जो बाहर खड़े हैं बैग ले के और कुछ अंदर भी खड़े हुए हैं और यहां पर चारों तरफ--

यहां पर एक बहोत बड़ा मॉल है और यहां पे हर तरीके का समान है यहां स्टील के बर्तन है प्लास्टिक के बर्तन है।

और सम अंग अ आगे की तरफ बोतलें हैं और बहुत सारी यहाँ पे बहुत सारी रैक में सामान रखा है ऊपर की तरफ --

ये किसी हाईवे का सीन है और यहाँ पर एक ट्रक चल रहा है और पीछे और आगे की तरफ बोर्ड लगा हुआ है।

यहां पे ऑफिस है और यहां पे एक बोर्ड लगा हुआ है काले रंग का और उसपे व्हाइट कलर से लिखा हुआ है।

और हर मेज के ऊपर एक छतरी लगी हुई है और चारों तरफ वाइट कलर की कुर्सी है और जिस पर लोग बैठे हुए हैं।

यहाँ पे ग्रिल बनी हुई है चढ़ने के लिए सीढ़ी है और सामने काउंटर बना हुआ है जिसमें कोई --

एक स्कूटर पे आदमी जा रहा है एक बाइक पे आदमी जा रहा और और अ टी स्कू वो स ऑटो जा रहा है और अ यहाँ पर एक पुलिस वाला भी --

यह एक कार स्टैंड है और जो छतों के छत के नीचे है बहुत सारी यहां पे कार हैं यहां पे बहुत सारी कार हैं बहुत।

बस खड़ी हुई है टेंपो खड़े हुए हैं और यहां पे टीन शेड पड़ा हुआ है और इस पे इसके अंदर जो है लोग बैठे हुए हैं टीन शेड के।

गांव का सीन है और घर के पास का सीन है यहां पर चार पांच भैंस है जो खा रही है एक उनका बहुत बड़ा--

और बहोत जगह खाली पड़ी हुई है और यहां पे मिट्टी है और यहां पे बारिश हो रखी है तो उसे पूरी की पूरी जगह में पानी भरा है और एक दीवार है।

कार्टन रखे हैं और डिब्बे भी रखे हैं और यहाँ पे एक काउंटर बना हुआ है और यहाँ पे दो-तीन कुर्सियें भी रखी हुई हैं और सामने की तरफ--